यहाँ पे आप पहाड़ के नीचे घर भी बने हुए है छोटे-छोटे।

यहां पे पानी में बत्तख भी है बोहोत ।

एक आदमी है जो खड़े होके बच्चों को कुछ बता रहे --

यहाँ पे बहोत सारे पेड़ दिख रहे है ग्रीन --

ये कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पे एक लड़का --